यह एक रेस्टोरेंट है इसका सीटिंग एरिया बोहोत प्रभावशाली और आकर्षण हैं।

ये एक मिठाई की दुकान है यहां पेड़े काजूकतली रसमलाई ब्रेड पकोड़े और--

यह एक बड़ा सा हॉल है जिसमें एक तरफ कूलर--

जाके झरनों के अह मजे उठा रहा है झरनों के पानी में--

और कुछ फल फूल रखे हुए हैं।

इस इमेज में बड़े से प्रोग्रामिंग हाल को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे चेयर्स लगे हैं।

कुछ नहा रहे है स्विमिंग पूल में कुछ बाजु में बैठे हुए हैं।